यहा रनवे है उपर आसमान है एक प्लेन है एक ट्रक है उसके टायर दिख रहे है एक गोन है।

यहाँ एक पुल है पांच उसमे पिल्लर बने है वहाँ से पानी बह रहा है पीछे मे हरे हरे बड़े पेड़ पौधे है।

सामने बहुत बिल्डिंग है ऊपर आसमान है एक ट्रे है कुछ बलून है।

उपरछे झूमर है। सामने हरे कलर का कुछ दिख रहा है।

बहुत सारी लाइट हैं लाल सफ़ेद कलर की बार्डर हैं नीचे मॅट हैं।

ऊपर लाइट लगी है।

यहा बोहत प्रकार के मच्छी है कुछ लोग खड़े है एक फोन पे बात कर रहा है सामने बोहोत तीन गड़िया है।

उपर दो लाइट है। आसमान दिखाई दे रहा है। नीचे फ्लोर है।

कही लाइट्स है पीछे सूरज है।

ये साइड मे थोड़े से पानी है। बाकी छोटे-बड़े पत्थर है। ऊपर आसमान है।

यहा एक शादी हो रही है। शादी मे बहुत सारे लोग है। बहुत सारी चेअर्स है।

यह एक दुकान है एक बल्ब लगा है एक शुगर फ्री का बोर्ड लगा है।

यहा एक बहुत बड़ा पेंडाल है सामने कुछ बहुत बड़े-बड़े बिल्डिंगस है ऊपर आसमान है कुछ बड़े-बड़े पेड़ है बहुत सारी चेयर है।

एक नीले कलर की वेल्कम मैट है।